अ बहुत सारे मखाने बने हुए हैं | हरे पेड़ पौधे हैं बादल सफेद है।

एक सामने नहर है जिस नहर में पानी भरा हुआ है और कुछ बिल्डिंगे और मशीनें टावर खड़े हुए हैं और बादल नीला हैं|

और मैनको मैनको और उसके बगल में एक बड़ी सी तार रस्सियाँ रखी हुई है।

और अगल-बगल भी दुकाने है और बैठने के लिए एक कुर्सियां रखी हुई है।

जिस गार्डन के अंदर एक स्विमिंगपूल बना हुआ है एक फुवारा देने वाला मशीन भी लगी हुई है।

हुई है वहा पर एक लोह का झगड़ा लगा हुआ है उसमें बहुत सारे जानवर हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है शाम में बिलंगी दाख रही है।

सा-- बर्तनों का दुकान हैजहां एक लड़का खड़ा हुआ है और बहुत सारी बरतने रखे हुए है प्लास्टिक के कारटूने रखी हुई है।